ई कै कु घर कु दृश्य छ लगण लग्युं।

घर का भीतर बहौत बड़ी माँ दुर्गा की मूर्ति च रखीं जे की लोग पूजा छन करना लाग्यां कई सारा लोगों की भीड़ छै यख दिखेण लगीं।